यहां पत्थर का पहाड़ जैसा दिख रहा है।

यहाँ बहोत बड़ा मैदान जैसा है।

इधर बड़ा चेक कर रहे हैं।

यह बहोत बड़ा दुकान जैसा दिख रहा है।

यहां बहोत बड़ा बिल्डिंग है जिस पे--

कार खड़ा है जिस पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

या दो रोड बना हुआ है।

चिड़िया बॉल खेलने का समान जैसा दिख रहा है।

पौधा लगाया हुआ है जिस पौधे पे--

और लड़की लड़का खड़ा हुआ है ए जैसे कर रहे हैं बड़ा सा हॉल है।

बड़ा सा मॉल जैसा दिख रहा है हॉल है बहोत बड़ा हॉल है लोग चल रहे है बड़ा-बड़ा सा खिड़की लगा हुआ है गे जैसे खंभा बना हुआ है।